और इसकी सजावट भी बहुत अच्छी नजर आ रही है इसके बहुत अच्छे इसमें खुशबू भी आ रही --

ये एक हनुमान आयुर्वेदिक पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र है।

और यहां पर इलाज भी और दवाई का होता है इसके बारे में ऑक्सीजन भी रखा हुआ है।

है यहां पर इस वक्त में पैटीज वगैरा भी यहां मिलती है यहां पे तीन चार आदमी खड़े हुए है।

पत्ता गोभी और बैंगन वगैरा आलू प्याज टमाटर शिमला मिर्च यहां पे बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं।

चारों तरफ बहोत अच्छे प पेड़ भी लगे हुए हैं और घासे भी सफाई से हो रखी है और वहां पे बच्चे खेल रहे हैं।

अ स्कर्ट ब्लाउज ब्लू रंग का पहेन रखा है।

एक एच_पी का पेट्रोल पंप है यहां पर पेट्रोल डीजल और स्पीड वाला पेट्रोल भी यहां मिलता है।

ये एक गार्डन है यहां पर एक घर भी बना हुआ है और इसके पास में एक कॉलेज खंडरवाल --

ये एक एटेल का ऑफिस है ये पार्टनर मतलब यहां पर ऐटेल की सिम वगैरा --

यह कोई गार्डन बना हुआ है वहां पे बच्चे पिकनिक के लिए आए हुए है सबका अलग अलग --

बना हुआ है और उसके चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं और यहां काफी अच्छा नजारा --